पीएचपीपर बुनियादी स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
यहाँ हम इफ statementस्टेट्मेन्ट पर चर्चा करेंगे
अगर आपके पास लिखित कोड है तो आपको इफ statementस्टेट्मेन्ट कि जानकारी होगी
यह पीएचपी में ज्यादा अलग नहीं है
मैं अभी शीघ्र ही एक निष्पादित करूँगा और आपको दिखाऊँगा
तो चलिए शुरू करते हैं
ठीक है यहाँ इफ statementस्टेट्मेन्ट के बारे में संक्षिप्त है
यह कुछ शर्त आरक्षित करता है
यदि शर्त सही है तो यह कोड के एक पाथ को निष्पादित करता है
यदि यह गलत है यह कोड के अन्य पाथ को निष्पादित करेगा
उदाहरणस्वरूप यह संरचना है
if कोष्ठकों के अंदर शर्त यह जानने के लिए है कि 1 1 के बराबर है
ध्यान दें मैं यहाँ डबल इक्वल टू चिन्ह का उपयोग कर रहा हूँ
यह कम्पेरिज़न ऑपरेटर है
दूसरे ट्यूटोरियल में हम ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे
यह इस इक्वल टो जैसा पढ़ा जाता है हालाँकि यह इक्वल्स की तरह समान नहीं है
जब हम वेरिएबल्स का उपयोग कर रहे होते हैं जब हम तुलना करना चाहते हैं डबल इक्वल टू का उपयोग करते हैं
यदि आप सही पाथ के लिए जा रहे हैं आप दो कर्ली कोष्ठकों का उपयोग कर सकते हैं
हम यहाँ एक ओपन करने जा रहे हैं
हमारा कोड कोष्ठकों के बीच में चला जायेगा
यदि यह सही नहीं है हम अन्य मान लेंगे
समान संरचना अतः दो कर्ली कोष्ठक
उदाहरणस्वरूप यदि 1 1 के बराबर है हम एको सही मानेंगे
यदि 1 1 के बराबर नहीं है तो जो हमें प्राप्त होना चाहिए वह है गलत फ़ाल्स जब हम अपनी फाइल चलाते हैं
क्योंकि 1 1 के बराबर है तो जो हमें प्राप्त होता है वह है सही जब हम अपनी फाइल चलाते हैं
चलिए इसे बदलते हैं यदि 1 2 के बराबर है जो यह नहीं करता तब हमें गलत प्राप्त होगा
अतः हमने पहले से ही एक साधारण प्रोग्राम बनाया होगा यह बताने के लिए यदि एक संख्या दूसरी संख्या के समान है
यह प्रोग्राम के लिए एक अत्यंत नासमझ एप्लीकेशन है
इसलिए मैं कुछ और अधिक जोड़ूँगा
मैं पासवर्ड ऐक्सेस के लिए एक छोटा प्रोग्राम बनाऊँगा
हम यहाँ वेरिएबल में पासवर्ड स्टोर करने जा रहे हैं
मान लीजिए पासवर्ड एबीसी है
मैं उक्ति के द्वारा मेरे इफ फंक्शन फलन में वेरिएबल को मिलाने जा रहा हूँ
यदि पासवर्ड दोहरे बराबर डेफ याद रखें
और मैं मानूँगा कि ऐक्सेस स्वीकृत हो गया है
माफ कीजिए मैंने एक गलती कर दी है
डेफ पासवर्ड है जिसे हम यूजर के लिए पूछना चाहते हैं
एबीसी पासवर्ड है जिसे मैं सिस्टम में डाल रहा हूँ
इसलिए यदि यह डेफ के बराबर नहीं हैमैं मानूँगा कि ऐक्सेस अस्वीकार हो गया है
पासवर्ड जो मैंने दिया है वह एबीसी है
हम डेफ की पासवर्ड से तुलना करने जा रहे हैं जो संचित पासवर्ड है
यदि यह डेफ के बराबर है हम मानेंगे कि ऐक्सेस स्वीकृत हो गया अथवा ऐक्सेस अस्वीकृत हो गया है
चलिए कोशिश करते हैं
ऐक्सेस अस्वीकृत क्योंकि पासवर्ड मैच नहीं हुये
इस आधार पर आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने वेरिएबल को मिलाया है
इसे डेफ में बदलो और हमें ऐक्सेस स्वीकृति प्राप्त होगी
क्योंकि मेरे पास एक लाइन कोड यहाँ है और अन्य एक लाइन कोड यहाँ है
मुझे इन कर्ली कोष्ठकों से छुटकारा मिल सकता है
मेरे लिए वह काफी उत्तम दिखता है
कृपया ध्यान दें कि यहाँ कर्ली कोष्ठक जोड़ने का कोई मतलब नहीं यदि आपके पास साधारण इफ statementsस्टेट्मेन्ट के लिए कोड की केवल एक लाइन है
इन जैसे
यदि यहाँ लाइन के बाद लाइन होगी तो आपको कर्ली कोष्ठकों की आवश्यकता होगी
उदाहरणस्वरूप चलिए नये वेरिएबल को यहाँ सेट करते हैं
ऐक्सेस बराबर स्वीकृतएक्सेस इक्वल्स एलोव्ड वह कोड की केवल मूलतः अन्य लाइन है
लेकिन जब मैं इसे चलाने कि कोशिश करता हूँ और चलाता हूँ हमें एक एरर मिलती है
यह कहता है एएन अनएक्सपेक्टेड T else ओन लाइन 8
चलिए लाइन 8 खोजते हैं यह यहाँ है
इसके पहले की लाइन समस्या का कारण है
यही वजह है कि हमें कोड की दो या दो से अधिक लाइनों के लिए अपने कर्ली कोष्ठकों को वापस जोड़ने की जरूरत होती है
हम इसे रिफ्रेश करते हैं और ऐक्सेस स्वीकृत है
अब मैंने एक नया वेरिएबल सेट किया है ऐक्सेस स्वीकर होगा
यह पूर्ण मदद नहीं होगी
लेकिन मैं केवल आपको एक उदाहरण दे रहा था
आप देख सकते हैं कि यह अभी तक एक सिंगल लाइन है और यह दोहरी लाइनें हैं
और आप उन्हें मिश्रित नहीं कर सकते
ठीक है मैंने एक वेरिएबल बनाया
मैंने इसे एक इफ स्टेटमेंट स्टेट्मेन्ट में निगमित किया
उम्मीद है यह उपयोगी था
अब मैं इस ट्यूटोरिटल को समाप्त करती हूँ
यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है